नर्सरी दिखाई दे रही है।

यहां पर अच्छे-अच्छे फूल और पौधे मिलते हैं।

कमरे में दो सोफे भी लगे हुए हैं।

हमें इस तस्वीर में एक इमारत दिखाई दे रही है।

सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

कमरे में एक बेड लगा हुआ है।

एक इमारत दिखाई दे रही है।

इमारत के ऊपर स्ट्रांग फिटनेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें इस तस्वीर में एक--

इस इमारत का रंग सफेद है।

इमारत के बाहर तीन गाड़ियां भी लगी हुई हैं।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

कमरे की दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है।

हमें इस तस्वीर में एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

गारी के बाहर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।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

कमरे में बहुत सारे बैलूंस लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक सफेद रंग की स शर्ट पहने एक आदमी भी खरा है।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

गाड़ी पर एस लिखा हुआ है।

ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है।